यहाँ पे हम कुछ--

यहाँ पे हम एक बैंक देख देख पा रहे हैं जिसका नाम है एच_डी_एफ_सी बैंक ।

यहाँ पे हम एक पार्क देख पा रहे है इस पार्क में हम बहुत सुंदर-सुंदर फूल के पेड़ देख पा रहे है।